इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे--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

यहां मुझे कुछ दुकान दिखाई दे रही हैं।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

यहाँ मुझे कुछ बोर्ड दिखाई दे रहें--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

यहां मुझे एक शीशा दिखाई दे रहा है।